यह एक मस्जिद है यहाँ पे उपर बादल है बादल देख रहे हैं और सूरज भी हुआ है।

और इसमें बहुत ही तरह- तरह के कलाक्रतियां बनाई हुई है।

बहुत ही साफ़ पानी देखा जा रहा है जिसमें बरे जैसा एक जहाज देखा जा रहा है और एक भी और एक जहाज है खुला आसमान है।

अगल बगल दीवाल दिया हुआ है गाच वृक्ष बहुत ही घने देखे जा रहे हैं।

और एक छोटा जैसा मकान है और लोग योगा कर रहे हैं|

अम मेरुन कलर का गंजी पहना है मेरुन और ब्लेक और अंदर सेब रखा हुआ है सेब है और फ्रूट्स --

और पीछे एक झोपड़ी है एक आदमी भी खड़ा है|